दो लड़के दिखाई दे रहे और कुछ पानी का भी दृश दिखाई दे रहा निचे बहुत जमीन पे बहुत सारे मिट्टीया दिखाई दे रही ऊपर एक बड़ासा बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

ये एक स्टेज का दृश है जहा एक दूल्हा और दुल्हन खड़े है दुल्हन ने लाल कलर की चुनरी और ड्रेस पेहनी हैं। इस स्टेज के पीछे बहुत सारे फूल--

बाइक नीचे एक बड़ासा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। जो की उझले कलर के जहा बोहत सारे खिड़किया भी लगी हुई है। एक लड़का जूता पहना हुआ है। जिसके हाथ मे कुछ बैग है।

ये एक बडासा महावीध्यालय का दृश है जिसके आगे एक खाली जगह है जहा कुछ मोटरसायकल रखी हुई है सामने दो तीन लडकीय खड़ी हुई है यहा एक स्कूटी के सामने एक अंकल खड़े है।